ये बहोत अच्छे लग रहा है। गेट भी बोहोत लग रहा है आसमान हरा है फीरोजी है आसमान जमींन भी अच्छी लग रही हैं और ये पेड़ भी बोहोत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं।

ये ग्राउंड बहोत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहां के कोच भी बहोत अ अच्छा लग अ अच्छा खेल सिखाता है। ये एक बैट्स्मन भी बहोत अच्छे लग रहे है।

ये मॉल बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में ये यहाँ पर एक आदमी भी खड़ा है है की टांग है ये खाली बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है।

ये बहुत ही अच्छा अस्पताल है। यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं। बहुत ही ये यहाँ की सीट भी बहुत ही अच्छी लग रही है।